महजिद की सजावट बैलून से की गई हैं जो बैलून ब्लू उजला लाल हरा में दिख रही हैं।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

एक लोग हैं जो कहीं जा रहे हैं।

पु बगल साइड से पुल नजर आ रही है नीचे के साइड में कच्ची दीवारें कच्ची सड़के हैं जो पु--

यहां मुझे एक कंपनी दिखाई दे रही है।

जहां एक टेबल पे दो कॉफी एक वाटर बोतल और दो कटोरी में कुछ मैगी पास्ता रखी हुई है।

जो बैंगनी कलर की साड़ी में पहन--

यहां मुझे पहाड़ से गिरती हुई झरना नजर आ रही हैं जिसके नीचे बहुत सारे लोग--

प्रचार प्रसार करने के लिए ये गाड़ी लगी हुई हैं साइड में एक छाता दिखाई दे रहा है।